हमारे किचन के लिए जरूरी होता है वो हर चीज यहाँ पे है।

यहाँ पे एक गेरेज दिखाई ज दे रहा है जो गाड़ी का है यहाँ पे |

यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो का अ कान में ईयरफोन लगाया है स्वेटर पहना हुआ है।

यहाँ पे इस दुकान का नाम है पूजा ड्राई कलर्स या साड़ी उम पोलिश सेंटर है

और यहाँ इसके नीचे कारपेट बिछाया हुआ है जो रेड और ब्लू कलर का है।

यहाँ पे एक ए.टी.एम. दिखाया जा रहा है और इसपे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए.टी.एम. ।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसपे सम्राठिया लिखा हुआ है।

पोस्टर भी चिपकाये हुए जैसे लगता है यहाँ पे कोचिंग क्लास चलता है।

अब येलो कलर का दिखाई दे रहा है | वहाँ पे एक दो तीन चार पेड़ भी है जो-हरे भरे बहुत दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे।